नमस्कार दोस्तों पाइथन मॉड्यूल्स को इस्तेमाल करने पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत में आप कमांड लाइन से पाइथन स्क्रिप्ट्स को निष्पादित करने में
स्क्रिप्ट्स में इम्पोर्ट इस्तेमाल करने में
स्किपी और पाइलैब मॉड्यूल्स इस्तेमाल करने में
पाइथन स्टैन्डर्ड मॉड्यूल्स और 3आरडी पार्टी मॉड्यूल्स इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे
इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले हम आपको प्लॉट को परस्पर तरीके से इस्तेमाल करने पर प्लॉट को सजाने पर और प्लॉट्स को सेव करने पर ट्यूटोरियल्स को समाप्त करने की सलाह देते हैं
हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए एक सरल पाइथन स्क्रिप्ट बनाते हैं
अपना टेक्स्ट एडिटर खोलें और निम्न टाइप करें
प्रिंट विथिन डबल क्वोट्स हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन प्रिंट अब स्क्रिप्ट को helloपाय के रूप में सेव करें
आईपाइथन इन्टरप्रेटर शुरू करें
टर्मिनल खोलें और टाइप करें इपिथॉन पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने देखा था कि आईपाइथन इन्टरप्रेटर का इस्तेमाल करते हुए परसेंटेज रुन इस्तेमाल करके एक स्क्रिप्ट कैसे रन करें
अतः टाइप करें परसेंटेज रुन हाइपेन आई helloपाय किन्तु पाइथन स्क्रिप्ट रन करने का यह सही तरीका नहीं है
इसको रन करने का सही तरीका है पाइथन इन्टरप्रेटर का इस्तेमाल करके

टर्मिनल खोलें और जिस डायरेक्टरी में helloपाय है वहाँ जाएँ
अब पाइथॉन helloपाय के रूप में स्क्रिप्ट रन करें
इसने स्क्रिप्ट निष्पादित की और हमें आउटपुट हेलो World

सिन्टैक्स है पाइथॉन स्पेस फाइलनेम अब हमारे पास फोर प्लॉट सवाल है जहाँ हमने चार प्लॉट्स एक ही चित्र में प्लॉट किये हैं
चलिए उस स्क्रिप्ट को कमांड लाइन से रन करते हैं
टाइप करें पाइथॉन फोर अंडरस्कोर plotपाय Oops
निसंदेह रूप से इसे कार्य करना चाहिए था इसने नहीं किया
इसने एक एरर दी है linspace इस नोट डिफाइंड जिसका मतलब है फंक्शन linspace अभी के नेम स्पेस में उपलब्ध नहीं है
किन्तु यदि आप इसी स्क्रिप्ट को अपने आईपाइथन इन्टरप्रेटर में ऑप्शन हाइपेन पाइलैब के साथ160run i फोर अंडरस्कोर plotपाय इस्तेमाल करके रन करते हैं तो यह कार्य करता हैं क्योंकि जब आईपाइथन इन्टरप्रेटर शुरू होता है तो हाइपेन पाइलैब ऑप्शन वांछित मॉड्यूल्स को हमारे नेम स्पेस में इम्पोर्ट करके कुछ कार्य करता है
और इस तरह से हमें मॉड्यूल्स को अलग से इम्पोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती
अतः अब समस्या को सही करने की कोशिश करते हैं और स्क्रिप्ट को कमांड लाइन में रन करते हैं

इस लाइन को स्क्रिप्ट में पहली लाइन के रूप में जोड़े
फ्रॉम स्किपी इम्पोर्ट स्टार अब स्क्रिप्ट को फिर से रन करें
टाइप करें पाइथॉन फोर अंडरस्कोर plotपाय अब इसने दूसरी एरर दी प्लॉट नोट डिफाइंड फाइल को फिर से बदलें और इस लाइन को अपनी स्क्रिप्ट में दूसरी लाइन के रूप में जोड़ें और इसे सेव करें
अतः फोर अंडरस्कोर plotपाय में दूसरी लाइन जोड़ें और सेव करें
फ्रॉम पाइलैब इम्पोर्ट स्टार और अब स्क्रिप्ट रन करें अतः टाइप करें पाइथॉन फोर अंडरस्कोर plotपाय हाँ
इसने कार्य किया
तो हमने क्या किया
हमने दरअसल कीवर्ड इम्पोर्ट का इस्तेमाल करके आवश्यक मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट किया
इसे फ्रॉम स्किपी इम्पोर्ट लिनस्पेस इंस्टीड ओएफ फ्रॉम स्किपी इम्पोर्ट का इस्तेमाल करके भी कर सकते थे
अतः प्रयोग में ऐस्टरिस्क या स्टार के बदले फंक्शन नेम्स को इस्तेमाल करना हमेशा अच्छा है
यदि एक विशिष्ट मॉड्यूल से इम्पोर्ट करने के लिए हम ऐस्टरिस्क का इस्तेमाल करें तो यह हमारे नेम स्पेस में समान नाम के साथ किसी मौजूद फंक्शन को बदलेगा
अतः फोर अंडरस्कोर plotपाय को बदलें हमने हमारे कोड की पहली दो लाइनों को डिलीट किया जिसे हमने जोड़ा था और इन लाइनों को जोड़ें
टाइप करें फ्रॉम स्किपी इम्पोर्ट लिनस्पेस फ्रॉम स्किपी इम्पोर्ट लिनस्पेस कॉमा पी कॉमा सिन फ्रॉम पाइलैब इम्पोर्ट प्लॉट कॉमा लेजेंड कॉमा एनोटेट फ्रॉम पाइलैब इम्पोर्ट ज़्लिम कॉमा यलिम कॉमा टाइटल कॉमा शो अब कोड को फिर से ऐसे रन करने की कोशिश करते हैं पाइथॉन फोर अंडरस्कोर plotपाय और एंटर दबाएँ
इसने कार्य किया
इस तरीके में हमने वास्तव में फंक्शन्स को वर्तमान नेम स्पेस में इम्पोर्ट किया
इसे करने का एक और तरीका है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
माइनस पाई से टू पाई तक साइन वेव प्लॉट करने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखें
इसे ऐसे हल कर सकते हैं पहली लाइन हम मॉड्यूल स्किपी से आवश्यक फंक्शन्स linspace sin और कांस्टेंट पी को इम्पोर्ट करते हैं
दूसरी और तीसरी लाइन में हम फंक्शन्स plot legend show title xlabel और ylabel इम्पोर्ट करते हैं
और बाकी कोड है जो प्लॉट को बनाता है
हम इसे ऐसे रन कर सकते हैं पाइथॉन sineपाय पाइथॉन sineपाय जैसा कि हम देख सकते हैं हमें हमारा सिने प्लॉट मिला
चलिए अपने विषय में आगे बढ़ते हैं
अभी तक हम मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट करने के बारे में सीख रहे थे अब मौड्यूल क्या है
एक मॉड्यूल केवल एक फाइल है जो पाइथन डेफिनेशन्स और स्टेटमेंट्स रखता है
डेफिनेशन्स एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल्स में या मुख्य मॉड्यूल में इम्पोर्ट कर सकते हैं
पाइथन के पास मॉड्यूल्स की शानदार स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है
यह काफी विस्तृत है काफी सुविधाएं प्रदान करता है
कुछ स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स हैं मैथ के लिए माथ रैंडमसेस इंटरनेट एक्सेस करने के लिए उर्लिब2 एसएमटीपीलिब सिस्टम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के लिए सिस ऑपरेटिंग सिस्टम इन्टरफेस के लिए ओएस नियमित उक्ति के लिए रे कम्प्रेशन के लिए जी ज़िप ज़िप फाइल तर फाइल और भी बहुत सारे हैं
पाइथॉन लाइब्रेरी रेफरेंस httpdocspythonorglibrary पर अधिक जाकारी पायें
यहाँ और भी अन्य मॉड्यूल्स हैं जैसे पाइलैब स्किपी मायावी इत्यादि जोकि कि स्टैंडर्ड पाइथन लाईब्रेरी के भाग नहीं हैं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
इस ट्यूटोरियल में हमने कमांड लाइन से स्क्रिप्ट्स रन करना 2मॉड्यूल नेम के आगे ऐस्टरिस्क निर्दिष्ट करके मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट करना
फंक्शन नेम निर्दिष्ट करके मॉड्यूल्स से केवल आवश्यक फंक्शन्स इम्पोर्ट करना
पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इस्तेमाल करना सीखा
यहाँ आप के हल करने के लिए कुछ स्वतः निर्धारण सवाल हैं
इनमें से कौन सा सही है
फ्रॉम स्किपी इम्पोर्ट प्लॉट फ्रॉम नंपी इम्पोर्ट प्लॉट फ्रॉम मैटप्लोटलिब इम्पोर्ट प्लॉट फ्रॉम पाइलैब इम्पोर्ट प्लॉट 2
इनमें से कौन सी लाइब्रेरिस पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का भाग हैं
मायावी स्किपी मैटप्लोटलिब उर्लिब2 3फंक्शन्स xlim और ylim को वर्तमान नेम स्पेस में ऐसे इम्पोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम पाइलैब इम्पोर्ट ज़्लिम कॉमा यलिम इम्पोर्ट पाइलैब फ्रॉम स्किपी इम्पोर्ट ज़्लिम कॉमा यलिम इम्पोर्ट स्किपी और उत्तर हैं 1ऑप्शन फ्रॉम पाइलैब इम्पोर्ट प्लॉट सही है क्योंकि प्लॉट मॉड्यूल मॉड्यूल का एक फंक्शन है
2उर्लिब2 पाइथन स्टैंडर्ड का एक भाग है
फंक्शन्स xlim और ylim को वर्तमान नेम स्पेस से ऐसे इम्पोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम पाइलैब इम्पोर्ट ज़्लिम कॉमा यलिम आशा है कि आपने इस ट्यूटोरियल का आनन्द उठाया और इसे लाभदायक समझा
मैं रवि कुमार आईआईटी बॉम्बे की तरफ से अब आपसे विदा लेता हूँ
धन्यवाद